नंबर एक दुकान दिखाई दे रही है उसके ऊपर एक बोर्ड है जिस पर कुछ लगा लिखा हुआ है अंदर एक टेबल पड़ी है जिसके साथ कुर्सी पड़ी है बाहर साथ में दुकान है जिसमें बताया कुछ लिखा हुआ है दुकान के अंदर समान और बाहर एक वाटर कूलर रखा हुआ है।

यहाँ पर एक नदी दिखाई दे रही है नदी के दूसरी तरफ कच्चा सड़क दिखाई दे रही है टापू से बने हुए है दूर देखने पर हरियाली छाई हुई है।

अन्दर की तरफ बगीचा दिखाई दे रहा है बगीचे मे बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है फर्श दिखाई दे रहा है फर्श गुलाबी रंग का है एक बोर्ड लगा हुआ है नीले रंग का उस पर पीले रंग से कुछ लिखा हुआ है।

यहाँ पर एक मैदान दिखाई दे रहा है मैदान के बीचों बीच घास दिखाई दे रही है चिड़िया दिखाई दे रही है सीढ़ीओ पर--

यहाँ पर एक आ औरत बैठी हुई है उसके सामने मेज़ रखी है उसके सामने बहुत सारा सामान रखा हुआ है कुछ बर्तन रखे हुये है एक गेट दिखाई दे रहा है जोकि नीले रंग का है पीछे की तरफ देखने पर एक आदमी दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ पर एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क पर गाड़िया खड़ी है गाड़ियो मे लोग बैठे हुए है नीचे एक आदमी एक बच्चे को लेकर खड़ा है दूसरी तरफ बहोत से लोग खड़े हुए है एक स्कूटर पे एक आदमी जा रहा और भी लोग उधर से आ रहे है एक कार खड़ी हुई है।

एक तोलने की मशीन दिखाई दे रही है सामने की तरफ एक रेक दिखाई दे रही है जिस पर बहुत सारा समान रखा है एक काउंटर भी रखा--

यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान के ऊपर टीन शेड दिखाई दे रहा है एक बोर्ड लग रहा है जिस पर कुछ लिखा हुआ है नीचे की तरफ भी कुछ लिखा हुआ है।

ये एक हॉल का दृश्य है जिसमे सीढ़िया दिखाई दे रही है नीचे लाल कलर का फर्श दिखाई दे रहा है कुर्सिया दिखाई दे रही है कुर्सिया लाल कलर की है।